और घर के बाहर जो है बहोत सारा पेड़ पौधा भी लगाया गया है घर के बाहर एक स्कूटी भी लगा हुआ है और वहां एक झूला भी--

इस फोटो में बहोत सारे लोग झरने के नीचे नहाते हुए दिख रहे हैं।

पीछे एक बड़ा सा बिल्डिंग भी दिख रहा है सफेद रंग का।

का नाम यहां पर लिखा गया है राजेश दिनेश फूल भंडार।

फोटो में एक रोड दिखाया जा रहा है।